यह दृश्य किसी बाइक वॉशिंग मशीन का दृश्य है।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

लकड़िया दिखाई दे रही है और बहोत सारे प्लस्तर किए हुए सरफेस दिखाई दे रहे हैं।

बाहर के तरफ हमें दरवाजा दिखाई दे रहा है जो शीशे का बना हुआ है।

और यहां पर एक कलमा अलमारी दिखाई जा रही है जिसमें बहोत सारे कपबोर्ड बने हुए हैं और पहले वाले रैक पे सैंडल दूसरे वाले में जूता तीसरे वाले में जूता चौथे वाले मे स्लिपर्स रखे हुए हैं।

यह दृश्य किसी रेस्टोरेंट का दृश्य है सामने की तरफ दो कुर्सियां दिखाई दे रही हैं।

यहाँ सामने की तरफ एक टेबल भी दिखाई दे रहा है टेबल के ऊपर दो चाय की कप दो मैगी और एक बोटल रखा हुआ है।

का बोर्ड का रंग उजला है और बाहर से ब्लू कलर का है।

इस पर एक छाता बना हुआ है इस पर लिखा हुआ इंडियन बैंक ।

बाहर के तरफ एक छोटी सी बच्ची दिखाई दे रही है।

यह दृश्य में हमें कई सारे प्लाई दिखाई दे रहे हैं।

एक किराना दुकान का नाम है एक निकेतन।

बाहर के तरफ में एक बाइक लगी हुई दिखाई दे रही है।

अगल बगल में खुला मैदान दिखाई दे रहा है जिसपर खेती की गई है।

बगल में बहोत सारे धान रोपे हुए दिखाई दे रहे हैं और सामने के तरफ छोटी सी नदी दिखाई दे रही है।

जिसके ऊपर बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

यहां पर बहुत सारे केबल्स है छोटा सा स्टैंड फैन है इस पे ए सी वर्क करता है।

दुकान के बाहर बहोत सारे पेंट के डब्बे रखे हुए हैं।

एक औरत ने अपने माथे पर टोकरी ली हुई है एक व्यक्ति अपने सबको आशीर्वाद दे रहा है।

यह बहोत सुंदर बना हुआ इसे बहोत सुंदर का डिजाइन किया गया है।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

अ इस दुकान का नाम एम केक्स एंड बेक्स ।